यहां पर कुछ सब्जी है कुछ--

एक आदमी है बाल गाड़ी लिखा है बैनर लगा है लाइट लगी है।

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे एक पेट्रोल टैंकी दिखाई दे रही है।

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर छोटे-बड़े कुछ--

और छत की जो दीवार है वो सफेद रंग में--

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे एक पेट्रोल टैंकी दिखाई दे रही है।

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि बहुत भीड़ पाड़ का इलाका है।

जो कि बहुत सुंदर ही नजारा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि एक बड़ी सी कार है जो कि सजाई गई हैऔर--

पूरा यहां पर फूलों से उसको सजाया गया है गेट खुला है ऊपर फूल लगे हैं।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर कुछ--

जो कि बहुत सुंदर लग रहा है।

दीवारों पर बैनर लगे हैं लाइट भी जल रहा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक बड़ा सा कपड़े का--

रास्ते बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ है पेड़ के कुछ पत्ते हरे से हैं।

और मत्ती जलते दिखाई दे रहे हैं।

नीचे मैदान में घांस दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं चिल्लर पार्टी --

एक लड़की स्टेज पर खड़ी हुई है और स्टेज को --

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि मुझे यहां पर एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है उसकी पटरियां दिखाई दे रही है बहुत सारी गिट्टी दिखाई दे रहा हैं।

कुछ हरे हरे से घांस और पेड़ टाइप दिखाई दे रहे हैं।

किताबें रखी हुई है कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि मुझे एक अ लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है नीचे --

अंदर से पर्दा लगा हुआ है साइड में पेड़ दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं के--

यहां पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और --

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ पर।